यहां पर एक आदमी ने लाल रंग की शर्ट पहनी है जिसने बैग टांग रखा है।

आसपास पंखे लगे हुए हैं यहां पे बहोत सी लाइटें जल रही हैं यहां पे कुछ चप्पलें रखी हुई हैं।

आस पास घ घास है इसमें पीले और हरी रंग की है।

पीछे लाल रंग के कुछ परदे लगे हुए हैं यहां पे बहोत सी लाइटें लगी हुई हैं।